एक केक रखा हुआ है और यहां पर एक बच्चे का जन्मदिन है वो एक साल का हो चुका है।

एक और गोलगप्पे वाला है।